इस तस्वीर में मुझे अनुकृति मोबाइल केयर नाम का बोर्ड लगा हुआ ऊपर की तरफ नजर आ रहा है ये एक मोबाइल सेंटर लगता है।

अ मशीनों के टच ग्लास चेंज किए जाते हैं और इसमें मोबाइल के--

ये एक स्टेशनरी की दुकान है कॉपी किताब पेन रबर पेंसिल --

इस तस्वीर में मुझे रेल की पटरियों पर एक ट्रेन का इंजन चलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक --

ये कोई इस तीर्थ तीर्थ स्थान लग रहा है और साइड में छतरियां आगे की तरफ में छतरियां लगी है और जालीदार --

इस तस्वीर में मुझे एक टैक्सी स्टैंड नजर हावा जहां की तीन चार टैक्सियां नजर आ रही हैं पीछे की तरफ में और एक पीछे की तरफ में बड़ी हम् --

एक टी-शर्ट पहने हुए खड़े हुए है बस की साइड में और पीछे की तरफ में बड़े बड़े सफेदे के पेड़ है लगे हुए हैं और यथास्त आसमान खुला हुआ है।

हाईवे रोड चल रही है और आगे की तरफ स्कूटी खड़ी हुई है और एक पेड़ पर के बाहर कर घटा बनाया गया है और ये पीपल का पेड़ नजर आ रहा --

इस तस्वीर में मुझे बाहर बाहर एक ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके उपर की तरफ में कारें और हैं और पीछे की तरफ में बड़े-बड़े पेड-पौधे नजर आ रहे हैं।

ऊपर की तरफ मे आसमान खुला हुआ नज़र आ रहा है सामने--

इस तस्वीर में मैं देख पा रही हूं इसमें छोटे छोटे एक बड़ा ये हॉल है जिसमें अलग अलग प्रकार के पुराने आइटम जोकि छोटे छोटे --